यह एक कॉलोनी है। कॉलोनी के गेट पर एक नीले कलर का ड्रम रखा है।

यह एक रेस्टोरेंट है यह रेस्टोरेंट का ग्राउंड है।

यह एक रिपेयरिंग करने की दुकान है।

यह सर्दियों का मौसम है।

यहां पर एक पीले कलर का झोपड़ी बनाया जो कि तिरपाल का है।

इनमें कुछ पीले कलर के गमले भी हैं।

यहां पर नीचे टाइल लगा रखी हैं।

यह एक पार्क बना हुआ है।

शीशे के पास में कुछ डम्बल रखें हैं।

एच एफ डीलक्स बाइक के पास एक लकड़ी पड़ी है।

एक साइकिल छोटी टंगी है जो की बिना पैर चलने वाले बच्चों की है।

फूल का रंग पीला और रेड है।

यहां पर कार के पास में एक लड़का खड़ा हुआ है।

यहां पर एक फायर गैस भी टंगा है।